के नीचे छवि कुशाल का बोर्ड लगा है।

यहां पर बड़ा बड़ा लिखा है हैप्पी न्यू ईयर ।

लॉन है यहां पर कैटरिंग लगी हुई है जीस--

यहां पे कई सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां उपर मूर्ति जैसा बना हुआ है।

जो मॉडल आर्किटेक्चर का एक कॉमन एलिमेंट है।

इससे नेचुरल लाइट अंदर आती है और एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ती है।

जो एस्थेटिक अपील देता है और बिल्डिंग को अलग बनाता है।

यहां कुछ चीजें नोटिसेबल हैं।

दिवारे पुरानी बेग्ड ब्रिक्स से बनी हुई लग रही है।

इमेज के लेफ्ट साइड में नीचे जाने वाली और ऊपर जाने वाली एस्केलेटर्स है।

इसमें एक मोटरसाइकल वर्कशॉप या बाइक सर्विस सेंटर दिख रहा है।

स्वीट शॉप भी है और यहां बाहर एक गाड़ी खड़ी है।

यहां पे कोई फंक्शन है यहां डांस किया जा रहा है।

यह एक छठ पूजा का दृश्य लग रहा है।

यहां पर कई सारी दुकानें लाइन से बनी हुई हैं।

और सामने काउंटर भी है जहां खाने पीने का ऑर्डर दे सकते हैं।

सफेद दीवार और सेलिंग जगह काफी साफ सुथरी और मेंटेंड लग रही है।

रेड नई नीचे रेड कलर की बाउंड्री है जो फ्लोर और वॉल के बीच में है राइट वॉल पे लगा हुआ है फायर एक्सटिन्गाइजर सेफ्टी के लिए।

और इसके अंदर कई सारे कपड़े रखे हुए हैं।

यह एक सब्जी की शॉप है यहां कई सारे वेजिटेबल्स रखे हुए--

गाजर रखे हुए हैं केले लटक रहे हैं।

यहां एक आदमी भी खड़ा है ये कैरेट के अंदर सारे फल रखे हुए हैं।

यहां पे पीछे एक स्कूल है जिसके ऊपर टीन पड़ी हुई है।

जो फ्लिपिंग़ एक्सरसाइज या मेट्रिक ट्रेनिंग के लिए यूज होता है।

एक दो आदमी बैठे हुए है और यहां पेड़ भी लगे हुए है।

आयत खेती या नारी सफाई का काम हो रहा है।

दूर एक बड़ी सफेद डोमे वाली इमारत दिख रही है।

ये किसी फंशन या सेरेमनी का पार्ट लग रहा है।

और एक पुरुष मंदिर की घंटियां सीलिंग से कई घंटियां अटक रही है।

यहां पे एक्स ओ भी कई सारे बने हुए हैं।

इन होल्डर के पास एक रेड मग एंड ग्लास भी रखा हुआ--

यहाँ बोहोत सारे फल रखे हुए अनार रखा हुआ है।

बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं।

ये सारी घासें बनी हुई है और यहां पे एक टेंट भी है जो रस्सी से बांधा हुआ--